यहाँ पर तीन लोग बोट में जा रहे हैं उन्होंने लाइफ जैकेट पहना हुआ है।

और आस-पास पेड़-पौधे है यहाँ पर एक आदमी नीली बैग और नीली टी-शर्ट पहना हुआ है और बैठा हुआ है